लगा हुआ दिख रहा है बहुत सी लाइटे दिख दिख रही है बहुत से झूले लगे हुए है।

सामने गाडी खड़ी हुई है बड़ा सा मैदान है ये बड़े से मैदान में --

ये क्लासरूम है क्लासरूम में कुछ बच्चे पढाई कर रहे है और टीचर सामने बोर्ड पर पढाते हुए --

रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म --

मस्जिद में भी लाइटे लगी हुई है रोड पर लाइटे लगी है रोड के उस तरफ मस्जिद बनी हुई है मस्जिद के पास में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

ये दुकान के उपर बोर्ड लगा है एच डी ऍफ़ सी बैंक का नीचे कुछ जेंट्स खड़े हुए है।

ये सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है सुंदर सा घर है घर के बाहर आंगन में रेलिंग लगी हुई है स्टील की --